यह एक फास्ट फूड की रेहड़ी है जहां पर बहुत सारे खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं।

लाल अक्षरों में कुछ लिखा भी हुआ है अलग अलग खानों में--

ए_सी भी लगा हुआ है लाइट्स भी यहां जगी हुई--

सामने खुली ग्राउंड है और यहां तीन लड़के खेल रहे हैं।

बाहर बोर्ड पर टी_वी जीरो सिक्स पॉइंट लिखा हुआ है और--

ये एक मठ है मठ के अंदर बहोत सारा समान रखा हुआ है जहां--

बहोत बड़ी इमारत बनी हुई है।

यहां कुछ दुकानें हैं दुकानों के अंदर बहुत सारी बोरियां रखी हुई हैं।

और स्कूटी और मोटरसाइकल भी यहां लगे हुए हैं।